सामने बहोत सी चेयर्स लगाई गई है और टेंट भी बनाया गया है।

जिसमें सामने एक व्यक्ति चेयर पे बैठा हुआ है और उसके सामने एक डेस्क रखी हुई डेस्क पे पेन बुक्स और प्लेट में भी--

यह एक पार्क की तस्वीर है पार्क में इंजॉय करने के लिए बहोत से साधन दिए गए--

राधा और कृष्णा जी अपने हाथ में बांसुरी पकड़े हुए हैं।

पीछे से एक व्यक्ति आ रहा है जिसका टीशर्ट का कलर पिंक और पैंट का कलर --

और वहां पे एक दुकान भी है छोटी सी।

सामने से एक रोड भी गई हुई है और आगे इसमें बहुत सी इलेक्ट्रिक पोल भी लगे हुए हैं।

सोफे मैं एक व्यक्ति और एक औरत बैठी हुई है बगल में एक व्यक्ति खड़े हैं।

यह एक योगा क्लास की तस्वीर है जिसमें बहुत सा व्यक्ति योगा कर रहे हैं।

ट्यूब का कलर गोल्डन है और उसमें गोल्डेन प्लस लिखा हुआ हैं।